चोरा तरफ पेर ही पेर है। कोई नई है। एक आदमी भी नही है। एक जानवर तक नही है। सिर्फ पेर ही पेर है। बोहत परे परे पेर है। ओर हम देख सकते है काफी हरे भरे लग रहे हैं । आस आसमान जो है पूरा नीला हैं ।

किसी मैदान का नजारा दिखाया गया है। जहा की जहा हम देख सकते है की चारो तरफ से सफ़ेद रंग की सरहद लगी हुई है ।

तस्वीर मैं हमे किसी पार्क का नजारा दिखायी दिया है जहा पर देख सकते है काफी पुराना पार्क है ।

इस तस्वीर में हमे किसी पार्क नजारा दिखाई गया है जहां हम देख सकते है चारो तरफ से इंसानों के लिए चलने के लिए रास्ते बने हुए है।

ओर पोधे को इस कदर इस तरह से कटिंग किया गया है जो की अलग अलग डिज़ाइन बनाया गया है। कट करके अलग अलग तरिका अलग तरिका डिज़ाइन अलग तरीका पौधे भी लगे --

एस.एन. कनोडिया एंड सन्स दीन बाजार जलपाइजोरी जो की दुकान का नाम है और हम देख पा रहे है कि चारो तरफ फटाके ही फटाके रखे हुए है जो कि काफी बड़े और अच्छे हैं